सारे सामानों को देख पा रही हूं।

जहां पे मुझे कुछ लोग काउंटर पे खड़े दिखाई दे रहे हैं।

सामने मै एक औरत को कुर्सी पे बैठे हुए देख पा रही हूं।

ऊपर की तरफ मुझे कुछ कार्टून के डिब्बे भी दिखाई दे रहे हैं।